यहाँ पर टिन आंगे दिखाई दे रही है और दो खम्भे दिखाई दे रहे हैं।

टाइल्स लगी हुई है देखने में दिन का सीन लग रहा है।

यहां पर बाजू में भी कुछ लड़कियां दिखाई दे रही है गमले लगे हुए है।

ये देखने में दिलकश ही लग रहा है ऊपर टिन भी डली हुई है लाइट एक बल्ब जलता हुआ दिखाई दे रहा है।